तराजू दिख रहा है और कुछ रेप मे रखे हुए सामान और इधर एक चॉकलेट का ये अ-अ एक बै बैग दिख रहा है और कुछ डिब्बे दिख रहे है।

और इधर एक मेडिकल भी दिख रहा है यह अंदर जाने का रास्ता है बट वहा पे कुछ लगा हुआ है।

यह एक डिब्बी जैसी दिख रही है उसके पीछे कुछ टैंक जैसा दिख रहा है।

यह एक बड़ी सी जगह दिख रही है और वहाँ पे एक है वो मिट्टी उठा रहा है और ऊपर मे आसमान दिख रहा है और--